ये एक दूकान दिख रहा है जनरल स्टोर हैकिराना किराना आइटम भी है इसमें अगरबत्ती भी है बहुत अच्छा देखने मे दूकान लग रहा है।

ये बहुत सुन्दर देखने मे गाय है। गाय के दो सिंग हैं गाय बहुत बढ़िया उजला और काला देखने मे लग रही है।

ये हवाई अड्डा का सीन है हवाई हवाई जहाज वेहिकल है वहाँ पे घास चारो तरफ लगा हुआ है।

हम देखने मे बहुत अच्छा लग रहा हैउसमे विकेट दिख रहा है।

बैट देख रहा है हेलमेट दिख रहा है जुते पहने हुए हैं खिलाड़ी और दस्ताने लगाये हुए हैं वे क्रिकेट बहुत नन देखने मे ठीक मैदान लग रहा है क्रिकेट मैदान--

पहाड़ी इलाका का ये सीन है पीछे पहाड़ हैं पहाड़ पे घास सब जमा हुआ है हरा-भरा है निचे पत्थर है पानी है ऊ-ऊ उपर आसमान है।

ये बहुत सुन्दर दृश्य फोटो देखने मे लग रहा है इसमें बहुत सारी कुर्सीया है।

ये बहुत मम घना घास व बहुत हरा-भरा जंगल है ऊपर आसमान है आसमान नीला दिखाई पड़ रहा है।